ऊपर हम लोग एक एल_इ_डी लाइट देख पा रहे एक व्हाइट कलर का स्विच बोर्ड देख पा रहे--

इस फोटो के अंदर हम लोग एक रूम देख पा रहे जोकि देख एक शैलून का दुकान लग रहा--

यहां पर से हम लोग कांच के दरवाजा देख पा रहे हैं जिसमें रॉकी भाई का अह अह पोस्टर टंगा पोस्टर बना हुआ है जो कि ब्राउन कलर का कोट पहने है लाल कलर का टाई --

स्किन कलर का है यहां का जो फ्लोर फ्लोर का कलर व्हाइट है कुछ में कुछ में रेड है और कुछ में येलो है साइड में हम लोग एख रे मालगारी देख पा रहे हैं।